बहुत सारे दर्शक भी इस फील्ड के अगल-बगल में बहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

इस चीत्र में एक नर्सरी दिखाई दे रही है जिसमें हर तरह के पौधेफूल दीख रहे है।

इस माकन के अलग-बगल में बहोत सारे घर दिखाई दे रहें हैं और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

जिसमें दो लोग बैठकर उस नाव को चला रहे हैं इस नदी के सामने में एक पहाड़ भी दिखाई दे रही हैं।

दो जोड़े की शादी हो रही है।

तलाब के अगल बगल में बहोत बड़े-बड़े पत्थल दिखाई दे रहे हैं और एक --

इस क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम दिखाई दे रही है इसमें सभी क्रिकेट और --

रोड के सामने सूर्य डूबते हुए दिखाई दे रही है।

यह एक सिनेमा हॉल है जिसमें बहुत सारे लाल कलर की कुर्सियां लगी हुई है।

बीच में एक तलाब भी दिखाई दे रही है इस तलाब के अगल-बगल में बहोत सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिख रहें हैं।

एक का रंग पीला है और हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं।

जिसमें हमारे भारत का तिरंगा झंडा है जिसका रंग नारंगी सफ़ेद हरा है।

तीन-चार गेट खुली हुई है सामने में दो लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहें हैं।

यहां टमाटर करेला बैंगन सेब संतरे गोभी दिखाई दे रही है।